कोई भी जॉब वगैरा यहां से पढ़ के निकाला जा सकता है बहोत अच्छा ही यहां के टीचर हैं बहोत अच्छे पढ़ते हैं।

बहोत अच्छे से सजावट हुआ है पूरा लाइट वगैरा जल रहा है।

पूरा अच्छे से सजावट किया गया है एकदम पूरा लाइट वगैरा सब लगा के।

हेलो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये एक बड़ा ही फैक्ट्री है जहां पे दस से पंद्रह वर्कर हैं और--

जीस रेंज में आएंगे उसे रेंज में अच्छा मिलेगा फैसिलिटी आपको--

हेलो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये घर है घर में जो की एक सौ शो को पेंट किया गया है।

बहोत अच्छे रेंज में आपको बहुत अच्छा फेसिलिटी दिया जाएगा बहुत अच्छा नज़ारा आपको फिल बहोत अच्छा फिल होगा यहां पे आके बहुत ही खूबसूरत अंदर सजावट।